यह एक बिल्डिंग का तस्वीर है जिसमें बैंक आफ इंडिया का पोस्टर लगा हुआ है जिसका कलर ब्लू है।

बैंक के नीचे एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ है जिसका कलर लाल है।

एक तालाब बहुत ही बड़ा नजर आ रही है और एक तालाब थोड़ी सी छोटी।

मंडप के ऊपर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

कुछ लोग ऊपर में बैठे हुए हैं और कुछ लोग स्टेज में बैठे हुए हैं।

तस्वीर में किसी कंस्ट्रक्शन की तस्वीर नजर आ रही है।

और औरत सूट पहनी है।

और बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे बाइक लगी हुई है।

दो लोग गंजी में हैं और दो लोग शर्ट में हैं।

दुकान बाहर मोटरसाइकिल लगी हुई है।

नीचे फर्श की कलर वाइट कलर की है।

यहां कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहे हैं।

तस्वीर में एक राशन की दुकान नजर आ रही है।

वोडाफोन के जस्ट बीच में बुक वर्ल्ड है।

जहां बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

कुछ टॉवल नजर आ रही है जिसका कलर लाल है।

जिसमें एक टेंपो एक कार और कुछ बाइक दिख रही है।

और कार की कलर लाल रंग की है।

नीचे एक बच्ची दिखाई पड़ रही है जो हाथ मुंह पर ली हुई है।

छेनी हथौड़ी से दीवार तोड़ रहे हैं।